इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे है साइड में।

सामने की ओर कई सारे लैटरिंग वेट्रिन की सीटें रखी हुई दिखाई दे रही हैं दीवालें व्हाइट कलर पुती हुई दिखाई दे रही।

छोटे बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है।

साइकिल वाइकल मीठे जो दिखाई दे सामने--

घूमते हुए दिखाई दे रहा है --

झूले बुले दिखाई दे रहा है आजूबाजू ये सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं ये सारी लोहे की रेलिंग लगाई गई हैं खाली मैदान बने हुए--

इतनी सारी चीज़ें लगी स्टेज पर स्टेज बना हुआ दिख रहा है सब फूलों से--

मुझे इस फोटो के सामने कोई एक किस चीज से आपको बना दिखाइ जिस स्टेट में कैसा थर्मा वर्मा कोल के साथ फ्लावर व्लाव्वर लगे हुए दिखाई दे रहें--